बिल्डिंग दिखाई दे रही है रेड कलर पिंक कलर में ब्लैक कलर में--

पे हरी-हरी घास है लाइट जल रही है छोटे-छोटे पौधे हैं।

कुछ लिखा हुआ है येलो कलर में उसकी पैड़ीयों पर--